जो फोटोग्राफर है फोटो के मदद से फोटोग्राफर है जो कैमरा की मदद से फोटो खींच रहे है और रील बना रहे हैं।

यह एक अ बहुत सुन्दर पिकनिक स्पॉट या टुरिज़म स्पॉट केह सकते है जहा पर लोग बोटिंग करने के लिए आए हुए है जो स्थान है बहुत हरियाली से सम्पन्न है ।